व इसमें एक काउंटर भी रखा हुआ है।

एक जूस काडने वाले पुरानी मशीन भी रखी हुई है।

यहां पर एक टीन पड़ी हुई है। उसके नीचे बोहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

और उसके पास एक एक पेट्रोल पंप भी है।

साइड में एक गेट टाइप भी दिख रहा है।

यह एक डॉक्टर का क्लीनिक है।

यहां पर बहोत सारे डोंगे रखे हुए हैं।

उसके साइड में एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां पर साइड में एक खंभा भी लगा हुआ है।

साइड में एक पुराना सा मकान भी है।

एक टीचर ने डंडी पकड़ रखी है।